और ये बहोत ही बड़ा है इसमें बहोत सारे सीढ़ियां है चढ़ने और उतरने के लिए।

यहां पर लकड़ी का फर्नीचर बना है।

इस होटल में बहोत सारे कुर्सियां है काले रंग की।

हरी साड़ी पहन कर एक गोल्डन साड़ी पहन कर बड़ी सी बिल्डिंग के सामने और बिल्डिंग के गेट पर--